तस्वीर के अंदर में मुझे एक पेर भी दिखाई दे रहा है पेर के नीचे में स्टैचू रखा गया है।

ग्राउंड के सामने में एक बड़ा सा घर भी नजर आ रहा है।

इस घर के छत मुझे नजर नहीं आ रहा है घर को पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया है।

घर के बरामदा में स्टैचूआ सब भी बनाया गया है।

इस टेंपल को कई तरह के रंग से पेंट की गई है।

रूम में मुझे कई सारे डब्बा रखे हुए नजर आ रहे हैं उनके अंदर में सी_सी_टी_वी भी लगाया गया है।

वुडन बेड दिखाई दे रहा है वुडन बेड को बनाया गया है।

वुडेन बेड को रूम के अंदर में रखा गया है रूम को ब्लू कलर से पेंट की गई है।